यह हिरण को केद कर के यहाँ पर चारा खिलाई जाते है यह हिरण अपने बच्चे के साथ में है ।

बहुत सारे नीचे चटाई ओछाई हुई है इस मस्जिद में बहुत सारे पंखे भी लगे हैं।

यह मस्जिद इटे की बनी गयी है। यह मस्जिद में बोहोत सारे मुस्लमान भाई सब शुक्रवार को--